यह एक मस्जिद है जिसका बड़ा चेनल गेट हे | उसके पीछे झाड़ दिख रहे हैं | ऊपर भोंपू भी लगे दिख रहे हैं ।

यह ढोलक की शॉप दिख रही है बाहर ढोलक रखे हुई है बैंड भी दिख रहे है।

यहाँ बोहोत सारी कार खड़ी दिख रही है। जो की दो ब्लैक है और एक ग्रे है और एक वाइट है उसके पीछे एक झाड़ भी दिख रहे है।